जगह है। इस पार्क में बोहोत ही हरियाली नजर आ रही है। हरे पेड़-पौध के अलावा हमे रेड - रेड पौधा भी नजर आ रहा है।

ये एक टॉवर की फोटो है टॉवर की डिज़ाइन बहुत ही टेढ़ी-मेढ़ी है।

ये एक मछली की दुकान है मछली के दुकान पे बुहत सारे लोग आए हैं हो सकता है ये लोग मछली खरीदने ही आए हो।

इस दृश्य में हमें बहुत सारे कपड़े का ढेर दिखाई दे रहा है जो की रस्सी से बाध के रखा--